पीछे पेड़ों की हरी पत्तियां दिखाई दे रही है और आसमान भी दिखाई दे रहा है एक लोहे का खंबा लगा हुआ है यहाँ पे --

हरा कलर है सफेद कलर का भी है और एक बड़ी-सी लाल कलर की लाइट जल रही है। बगल में एक खंबा भी लगा हुआ है। रात का समय है।

और यहा पे एक हॉल है बड़ा सा। नीचे लाल कलर का कारपेट है और यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है जहाँ पे लाल कलर दिखाई दे रहा है।

सामने दो खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं और बाहर सूरज की रोशनी का उजाला।

ये एक मकान है और मकान जो है वो चॉकलेट कलर का दिखाई दे रहा है। उस पे कुछ लिखा हुआ है नीचे ब्लू कलर का बैनर लगा हुआ है। लोहे की जाली लगी हुए है।

नीचे भी कुछ फोटो लगी हुए है छोटे वाले। एक विंडो खिड़की भी दिख रही है उसमे से बल्फ दिख रहा है।

आउटसाइड दो खम्भे दिखाई दे रहे हैं। बड़े वाले पेड़ भी नजर आ रहे हैं अंदर की साइड पे ।